और रेक पे समाने भी सजाया हुआ है।

बहुत सारे बैलून से सजावट की गई है।

इस दृश्य में पेट्रोल पंप का चित्र दिखाया गया है।

केला और सेब और अनार भी बिक रहा है।

बैंक भी लगे हुए हैं।

एस_एस फ्रेश मार्ट लि खा लिखा हुआ है।

टेबल के ऊपर मीनू रखा हुआ है।

और पत्थल भी दिखाई दे रहा है।

जहां पे बहुत सारे छड़ बिछाए हुए हैं।

पटरे से सेट्रिंग की हुई है।

और एक यहां पर दुकान भी दिखाई दे रहे--

और लाइट भी लगे हुए हैं।